टंगा है और एक कमरे के अंदर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

और इसमें तीन टूटी फूटी नांव पड़ी हुई है झील के उस-पास ।

डब्बों पर लिखा है लक्स क्लोजिंग । डब्बों के ऊपर रंग-बिरंगी साड़ियाँ रखी हुई हैं।

पीछे सफ़ेद रंग का एक बोर्ड है। जिस पर लिखा है सनबीम वोमेंस कॉलेज वरुणा।

काले रंग की है। ऑटो रिक्शा के पीछे एक सफ़ेद रंग की गाड़ी है और पीछे एक पुलिया है।

यह एक तस्वीर है जिसमें सामने एक पानी का तालाब है तालाब के किनारे बोहोत सारे घांस हैं। एक जानवर है जो घांस खा रहा है।

यह एक तस्वीर है जिसमें लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है और बहोत सारी रंग बिरंगी फुलों की मालाएं हैं।

द्वार दिखाई दे रहा है। आस-पास बहुत सारे लोग हैं और द्वार के उपर एक मूर्ति बनी हुई है।